पैरेंट्स भी है। कुछ बच्चे खड़े हैं कुछ बच्चे खेल रहे हैं।

ये गेट खोल रहे हैं।

एक स्टेशन है। यहाँ पे बहोत सारे लोग हैं ट्रेन है।

जयमाला का स्टेज है। यहां पे एक आदमी खड़ा है दूल्हे खड़े हैं।

दुल्हन के इंतजार में यहाँ पे डेकोरेशन बहोत अच्छा हुआ है।

की जगह है। यहाँ से --

यह एक गाड़ी है। इस गाड़ी का सजावट हुआ है। दूल्हे की गाड़ी है।

ये एक मंदिल है। मंदिल बहोत सुंदर है। कृष्ण जी की कृष्ण राधा जी की मूर्ति है स्थापित किया गया है। मूर्ति बहोत सुंदर है। पूजा हो --

एक आदमी बैठा हुआ है यहाँ पे --